यह एक दुकान है और बोहोत से कपड़े यहां पर टंगे हुए है।

यह एक नदी है। इस नदी के ऊपर एक शिप जो नाव जैसे दिख रही है।

यह एक मूरत है इस मूरत के आसपास भी दो मूरत हैं।